राजमहल ल सफ़ेद कलर में है।

और फिर बाद में यहाॅं पर और भी चित्र और अच्छी तरीके के फूल पेड़ पौधे हैं और खुले आसमान में और भी अच्छे लग --

जो कि इस मॉल को और भी आकर्षित कर रहे हैं ।